हैं बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड सामने कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा।

किताबें जो है बहोत ही भारी मात्रा में रखे हुए हैं एक आदमी जो है दुकान के बाहर खड़ा है दो आदमी है वो जो नीचे--

बहोत हि प्यारी इसकी जो हैं डेकोरेशन कि हुई हैं बहोत ही बड़ी जगह पे ये--

नदी जो है बहोत सुंदर तरीके से बह रही है पानी उसका बहोत ही साफ है ऊपर से लोग जो हैं।